लेफ्ट साइड में एक वाइट कलर की लगी हुई है राइट साइड में एक खंभा लगा हुआ है।

यह बहुत सारे फाउंटेंस रखे हुए हैं लेफ्ट साइड में छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं दो ऑरेंज कलर के गमले हैं और एक ग्रीन कलर का गमला है फाउंटेंस के जस्ट सामने एक स्टूल रखा है जो की ब्लैक कलर का है ।

यह एक ऑटो का शोरूम है जहां पर सामने ही एक ऑटो खड़ी है जो की गोल्डन और ब्लैक कलर पीछे वाइट कलर से लिखा हुआ है।